जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह एक ऑफिस है जिसमें काफी डेकोरेशन की हुई है। इसमें दो लैपटॉप रखे हुए हैं। एक एक्का लड़का बैठा हुआ है।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी सारी कारें खड़ी हुई हैं और कुछ इध लोग इधर-उधर घूम रहे हैं। सामने की साइड टेंट भी लगा हुआ है।

आँगन में एक पेड़ भी है घर के छत पर दीवारों पर कपड़े टंगे हुए हैं जो की सूख रहें हैं।

जैसा कि हम देख रहे हैं यह एक बड़ी नदी सी लग रही है। इसमें इस नदी में नाव है जोकि पिंक कलर की है। ग्रीन कलर की है।

जो भी अ जो भी सब्जियां अच्छी लगती हैं उन सब को खरीदने के लिए --

जैसा कि आप देख रहे हैं अ एक इसमें फुवारा है।

देखने में भी लग रहा है कि काफी लाइटिंग वाइटिंग के साथ अच्छे खासे डेकोरेट किया गया है।

जैसा कि हम देख रहे हैं यह एक स्टेशनरी शॉप है। यहां पर पेंसिल रबर कटर बीजर और काफी सारे स्केच वगैरा मिलते हैं। यहां से आप परचेज कर सकते है। काफी अच्छी चीजें मिलती हैं यहां पर।

जैसा कि हम देख रहे हैं यह एक मिठाई की दुकान है। यहां पर हर तरह का मीठा मिलता है।

जैसा की हम देख रहें है यह एक गैलरी है स्कूल गैलरी है | यह एक काफी अच्छा स्कूल है देखने में लग रहा है | साइड में ग्राउंड भी है पेड भी है कुछ लोग बैठे भी हुएँ है ।

गैलरी मे दो चेयर बीछी हुईं है और बोर्ड भी लगा हुआ है | नोटिस बोर्ड जिसपे की जो भी क़्वेरी होती है वो हम लिख देते है ।